ओ नीचे काफी अ म् नोटिस बोर्ड लगाया गया है और अ काफी सजावट इसकी की गई है।

यह एक कन्स्ट्रक्टिव वर्क चल रहा है जिससे लग रहा है आसपास की काफी अ यहाँ पर पिलर्स खड़े हुए हैं और यहाँ पर अ आसपास जितने भी घर बन रहे हैं वो काफी कंस्ट्रक्शन के हैं और यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। ये थ्री टायर मंजिल बन रही है।

लगता है कि नॉर्मल अअ रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखा गया है ।

यह एक वाटरपार्क दिख रहा है।

यहाँ एक टेलिफोन टावर है जिससे कि आसपास से नेटवर्क सप्लाईज अअ पावर सप्लाई होती है और इसके पास में एक उसके अंदर एक रेड कलर का जनरेटर भी रखा है ।